एक बहुत बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड मे कटोरी वगैरह जा रही है एक पेड़ है उसके नीचे एक जेंट्स खड़ा हुआ है।